लाल टी शर्ट में ठहरा हुआ है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ एयरटेल का पोस्टर लगा हुआ है।

ये मॉल है यहाँ पर ये बहोत सारे आदमी कपड़ा किन रहे है यहाँ देख सकते है लेडिस जेंट्स का सब का कपड़ा यहाँ मिलता है एक पुतला में कपड़ा टांगा हुआ है दो आदमी है।

पेड़ है हरे हरे घासें एक लेडीस जा रही है और इन्ह फूल का पेड़ है यह क्या देख सकते हैं हम --

ये ऑफिस है यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर ये तीन चेयर लगा हुआ है दो कुर्सी है यहाँ पर एक कंप्यूटर है।

और ये मकान है और देख सकते हैं इंटा का जुड़ैया चल रहा है उसके बगल में एक पेड़ है वाइट कलर का मकान है और एक--